ये छोटा सा खेलने के लिये स्टेडियम टाइप हैं यहां पर लोग खेलने के लिए आते हैं यहाँ पर हॉकी खेलते हैं ।

यहाँ पर गाड़ी में तेल डलवाने के लिए बहुत संख्या में आते हैं।

यहाँ पर हर प्रकार की खेल कुद होता रहता हैं कबबडी खो-खो क्रिकेट --

आप चाहे तो यहां पर आ सकते हो घुमने के--